ये चर्च के अंदर की तस्वीर है सामने में एक बड़ा सा टिश्यू क्रिशन का क्रॉस सिम्बोल दिख रहा है|

सिम्बोल के साइड में वाइट एंड येलो कलर के कपड़े पहने हुए और कुछ लड़के और लड़किया हाथ में मोमबत्तिया लिए दिखाई दे रही है।

पेड़-पौधे दिख रहे है वाइट शर्ट पहने अस्स कलर का पेंट पहने चस्मा पहने खड़ा है खुला आसमान दिखाई दे रहा है पेड़-पौधे दिख रहे है।

भवन की तस्वीर है भवन के गेट पे बोहोत सुंदर से बलून्स लगे हुए है रेड एंड व्हाइट कलर भवन के बाहर चेयर्स बिछी है कुछ आदमी खड़े हैं।

एक गोमती जैसा दुकान है दुकान के बाहर एक लड़का खड़ा है दुकान के सामने एक कूड़े की बाल्टी रखी हुई है जो रेड कलर जी है।

बहोत सारी औरते बच्चियां बैठी हुई है एक साइड में और एक साइड में लड़के बैठे हुए है एक लड़का फोटो खींचता हुआ नज़र आ रहा है बहोत ही सुन्दर है।

पंडाल के बाहर एक आदमी चेयर पर बैठा हुआ है ब्लू कलर की लाइट से झालर से फूलों से रंग- बिरगे फूलों से पंडाल को सजाया गया है बहुत ही खूबसूरत हैं।